controlling display of images पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम image styles और photo gallery view के बारे में सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपोयग कर रही हूँ उबंटु operating system drupal 8 और firefox web browser
आप अपने पसंद का कोई भी web browser उपयोग कर सकते हैं
अपनी website को खोलें जिसे हमने पहले ही बनाया है
drupal में site की आवश्यकता अनुसार हम image के size और scale को बदल सकते हैं
drupal मूल image लेता है और हमारे अनुसार इसका size औऱ scale बदलता है
फिर file के इस version को सेव करता है
configuration पर click करें
हम यहाँ 2 image styles बनाने जा रहे हैं
नीचे scroll करें और media tab पर जाएँ
यहाँ हम image styles देख सकते हैं इस पर click करें
हम table के लिए image style बनायेंगे जिसे हमने set किया है
और अगले view के लिए भी जिसे हम बनाने जा रहे हैं जो कि logos का grid है
add image styles पर click करें
image style name में हम type करेंगे upcoming events 150 x 150
ध्यान दें कि drupal हमारे लिए machine का name भरता है
यह हमारा image style name है
अब create new style पर click करें
बाईं ओर मूल image है 600 by 800 pixels है और image का एडिट किया हुआ version दाईं ओर है
effect में select a new effect ड्रॉपडाउन में click करें
इस सूची में कई options प्रदर्शित होते हैं इन options में से मैं scale and crop effect चुनूँगी
आप अपने अनुसार किसी भी option को चुन सकते हैं उदाहरणस्वरूप rotate resize या any
add button पर click करें
width 150 और height 150 प्रविष्ट करें
याद रखें कि मूल image से अधिक width और height न रखें
ऐसा करना image को pixelate करने का कारण होगा
add effect पर click करें
यहाँ हमारा नया image style है दाईं ओर की image में हम देख सकते हैं कि यह अब scaled और क्रोप हो चुकी है
एक और बनाएँ image styles पर click करें और फिर add image styles button पर click करें
इस समय image style name में हम time करेंगे: photo gallery of logos
create new style button पर click करें
यह image आपके machine पर किसी भी photo gallery में हो सकती है
आप यह किसी भी image के लिए किसी भी field में औऱ किसी भी कंटेंट में कर सकते हैं
फिर से select a new effect पर click करें औऱ फिर scale and crop option पर click करें
add button पर click करें add width 300 और height 300 प्रविष्ट करें
और फिर add effect button पर click करें
ध्यान दें कि दाईं ओर की image अब 300 by 300 के नये डाइमेंसन में है
यह दर्शाता है कि drupal प्रत्येक के लिए स्वत: ही प्रत्येक image style के लिए image का versions बनाता है औऱ फिर उन्हें site पर stores करता है
structure पर click करें फिर views पर click करें
अब edit पर क्लिक करें अपने upcoming events view को अपडेट करें
event logo पर click करें और image style upcoming events में बदलें
फिर apply पर click करें
प्रिव्यू सेक्सन पर नीचे scroll करें और हम देखेंगे कि हमारे सभी logos समान हैं
अब save पर click करें
back to site पर click करें यह हमारी website पर हमारा view है
इस तरह image styles कार्य करता है
अब इन सभी events के लिए grid लेआउट के रूप में नया view बनाएँ
ऐसा करने के लिए structures पर click करें फिर views और add new view पर click करें
हम इसे photo gallery name देंगे
view settings को content of type कोevents करें
यह विशेष view photooftheday या event के लिए इमैजेस की gallery के रूप में उपयोग कर सकते हैं
create a page पर click करें
नीचे scroll करें और fields के grid पर क्लिक करें
कृपया ध्यान रखें हम dropdown में drupal द्वारा दिए गए किसी भी any option को चुन सकते हैं
items to display field में 9 चुनें क्योंकि यह 3 by 3 grid दर्शाता है
create a menu link check करें
menu dropdown में main navigation option चुनें
फिर save and edit पर click करें
अपने 5 मानदंडों को फिर से जाँचें display page है
format grid है
यहाँ title नामक केवल एक field है
और अंतत: filter और sort criteria
अभी के लिए हम उन्हें ऐसे ही छोडेंगे
नीचे scroll करें यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास 4 columns और 9 events हैं
format में columns की संख्या बदलने के लिए settings option पर click करें
फिर columns की संख्या 3 करें और apply पर click करें
यह हमें 3 by 3 grid देगा
fields में add पर click करें
event logo पर जाएँ इस पर checkmark करें और फिर apply पर click करें
इस समय image style में photo gallery of logos चुनें
link image to में content चुनें और apply पर click करें
तुरंत ही नीचे preview section में grid प्रदर्शत होता है
अत: आप देखें कि grid लेआउट table से भिन्न है
सभी fields जिन्हें आपने node से चुना एक cell में है
और हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमें कितने cells प्रदर्शित करनी है
save पर click करें
back to site button पर click करें औऱ फिर photo gallery पर click करें
यह बेहतर दिख रहा है
छोटे डिवाइज जैसे कि mobile पर अपने 3 by 3 grid को बनाये रखने के लिए सभी इमैजेस का scale कम हो जाता है
और यह है जो drupal grid के साथ करता है
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में पहुँच गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने image styles और photo gallery view के बारे में सीखा
यह video acquia और os ट्रेनिंग से लिया गया है और spoken tutorial project आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है
इस link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करके देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें
spoken tutorial project nmeict मानव संसाधन विकास मंत्रायल और nvli संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है
यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद